जो की घास के आगे रखी है एक खंभा भी नजर आ रहा है।

जिसके आगे लाल रिबन लगाकर लोगों को रोकने की--

ये पिछली बार वाले हॉस्टल का दूसरा फोटो हमे दिखाई दे रहा है।

ये एक चर्च का दृश्य हो सकता है कुछ लोग यहां पे मेरा येसु --

मेरा यशु करते हुए घूम रहे हैं कुछ सजावटे भी हमें दिखाई दे रही है।

सब्जी वाली आंटी सब्जियों को छोड़कर पीछे गुटके के पास बैठी है।

यहां पे कुछ पहाड़ और कुछ घास पूस और दीवार दिखाई दे रही है।